एक हॉल के अंदर लकड़ी के बने हुए एक छोटे से टेबल के सामने मे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है उन्होने नीला रंग की शर्ट पेहना है सामने मे एक माइक है।

मिठाई के दुकान के अंदर कांच के रेक मै बहुत सारी मिठाईया रखी है।

एक मैदान मे साइकल खड़ी हुई है जहां साइकल खड़ी है उसके निचे की जमीन हल्की सी चॉकलेटी दिख रही है बाकि आस पास की पूरी जमीन हरी दिख रही है।

बगल एक भगवान भुद्ध जी की मूर्ति दिख रही है जिनका एक हाथ सीने पर है और एक हाथ नीचे की तरफ हैं।